और यहां पर नीचे में कुछ पत्थर गिरे भी हैं छोटा पत्थर है बहुत बड़ा भी पत्थर है ब्लू दिख रहा है।

जब की एक आदमी इस पर कलर कर रहा है नया डीजाइन हो रहा है| शायद प्लस - प्लस सब जगा बना हुआ है और एक लाइट लगा हुआ है| वहाँ पे व्हाईट कलर किया जा रहा किया हुआ है| इसपे और डिज़ाइन कर रहे हैं वो आदमी |

ये एक फोटो है जो की चाय अड्डा कैफे का फोटो है| यहाँ फोटो में एक --

यहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है जिसपे सीढ़ी लगा हुआ है काम चल रहा है इसपे और शीशा का बना हुआ है बड़ा-सा |